ये गेस्ट हाउस है यहाँ पर शादी विवाह फंक्शन बर्थडे आदि सारी पार्टियाँ होती हैं।

ये चिड़िया घर है। यहाँ पर हर तरीके के पक्षी जीव जंतु सब रहते हैं। जानवर भी रहते हैं यहाँ पर।

सोना चांदी जो भी है। सारा रूपया पैसा सब कुछ सेफ रहता है यहां पे।

बच्चे हो बड़े हो बूढ़े हो कोई भी हो सब कोई इसका उपयोग कर सकता है।

ये मोबाईल शॉप है हर तरीके के फोन हर कंपनी के हर अछे-अछे क्वालिटी के फोन हम यहाँ से ले सकते है खरीद सकते हैं सारी चीजे ।

ये जंगल एरिया है। लेकिन पूरा दृश्य को कितना सुंदर है।